यह एक माता जी मूर्त बनी हुई है इसके आगे दो घंटियां लगी हुई है नीचे बहुत सारा सामान रखा हुआ है।

सामने एक छत ढली हुई हैउसमें दो खंभे है एक लड़का खड़ा--

ये एक पहाड़ है इसके नीचे बहुत घने-घने पेड़ लगे हुए हैं।

दो कार्स खड़ी हुई हैएक थोड़े दुर चलके खजूर का पेड़ है उसके पास में चार खंबे --

दो गाड़ी खड़ी हुई है दो गाड़ी रोड के इस साइड खड़ी हुई है।

यह एक पेट्रोल पंप है इसमें चार खंभे है इसके ऊपर छत है छत मे लाइट लगी हुई हैं।

एक ही ट्रक खड़ा हुआ है सामने एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पे इंडियन ऑयल --

ये एक छोटा सा तालाब है इसके बाहर तीन कछुए है।

कार्स बाहर खड़ी हुई है दो कार अंदर खड़ी हुई हैइस बिल्डिंग का रंग हल्का पिक है।

रेलिंग लगी हुई है फर्श पे टाइल्स लग--